सामने तोप दिख रहा है जो रेड कलर का है उसके ऊपर एक गोल्डेन गुंबद बना हुआ है आसपास--

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जो ग्रे कलर से पेंट हुवा हुआ है।

बहुत सारे फर्नीचरों में एक टेबल है टेबल के ऊपर आठ प्लेटें लगाई गई है बगल में एक--

अलमारी है टेबल के चारों ओर आठ कुर्सियां लगी हुई हैं जो लकड़ी का बना है।

सामने एक घर दिख रहा है जो ब्लू कलर से--